यहां पर पेड़ पौधे हैं तथा एक बंदा है उसकी फोटो खींची जा रही है यहां बहुत ही सुंदर लाइटिंग है।

तथा यहां धूप की रोशनी भी आ रही है जिस वजह से यहां टेंट भी लगाए गयें हैं जहां लोग बैठ सकते हैं।

तथा और भी बहोत कुछ सामान रखा गया है यहां पर बहोत खूबसूरत सामान सजाया गया है।

यह कार व्हाइट कलर की कार है यहां बहोत ज्यादा कारे है पास पास में--

वो बैठी हुई है। यहां पर दीवार पर फैन लगाए हुए हैं तथा लाइटनिंग भी की गई है।

मॉडल्स के फोटो लगे हुए हैं पास ही में और दुकान भी है तथा ऊपर बहोत बड़े अक्षरों में इसका नाम लिखा गया है।

यहां पर धूप भी हो रखी है जिस वजह ये फोटो अच्छी है।

यहां पे बत्तख है जो पानी में तैर रही है।

चर्च के ऊपर भी बहुत ज्यादा आकृतियां बनाई हुई हैं।

यहां पास ही मे बहोत ज्यादा हरियाली है तो वह पास का नाजरा भी बहोत अच्छा है यहां बच्चे है जो खेल रहे है।

यहां पर अलग अलग प्रकार की कार मिलती है तथा यहां शोरूम में अभी बलूंस और लगे हुए हैं।

यहां पर कई लोग बैठे हुए हैं जो अपना डिनर इंजॉय कर रहे हैं यहां बहुत सारी टेबल है तथा एक टेबल पर तिरंगा भी लगाया हुआ है।

जिसे आम भाषा में सब्जी मंडी कहा जाता है इस सब्जी मंडी में अलग अलग प्रकार की सब्जियां फल फ्रूट आदि अन्य चीजें मिलती है यहां पर फोटो में --

यहां पर ईंटे व और कई सामान पड़े हुए है यहां बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है तथा यहां बहुत ज्यादा घर है।

यहां पर तीन अलग अलग ऑप्शन है जिससे आप फेशियल करा सकते हो।

बदमाशी की बोर्ड लगा हुआ है यह गांव हो सकता है जहां पर पेड़ हैं तथा अन्य कई चीजें भी है।